यह एक बस की फोटो है जोकि ओम बस है और इस गाड़ी का नम्बर बी आर जीरो सिक्स पि एफ --

बीस छयासठ है सामने जो इंसान खड़ा है वह इस बस का ड्राइवर लग रहा है और बस को देख के ऐसा लग रहा है शादी बिहा के लिए है क्योकि बस को बहोत ही अच्छे से स--

ई सरकारी पॉलीटेक्नीक कॉलेज हैं।

खिलौना है जिसे ये बहुत ही चाव से खेलते है और बहुत से प्रकार के बार्बीडाल है हर एक रेन्ज के बार्बीडाल रखे --

ए फोटो अंबिकापुर की बस स्टेशन का है फोटो है जहाँं आप देख सकते है की सामने बहोत से तीन चार बस --